एक आदमी वहां से गुजरते हुए दिखाई दे रहा है।

इसके आसपास बहुत सारी लाइटें दिखाई गई हैं जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं।

और इसके छत पर दो तीन बल्ब लग दो पीले वाले बल्ब लगी है और सात आ--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

इसके आगे एक येल्लो कलर की बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह पिक्चर किसी इवेंट के लिए इस्टेज को सजाया गया है।

दुपट्टा ली हुई है और इसमें वह किसी चीज का मेजरमेंट कर रही है जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सक--

छोटे छोटे गमले भी दिखाई दे रहे सामने ही एक एक साइनबोर्ड लगा है पी_वी_सी सेंटर एंड कॉलेज का लगा हुआ है।

समुंद्र के बीच बगल में ही एक छोटी सी पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें वर्क्स काम भी करते हुए दिखाई दे रहे है सामने एक मारुति खड़ी हुई है।

इसपे जे_सी_बी_एल और चौधरी मैटर्स लिखा हुआ है।

और उधर दो बच्चे वहां खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इसके बगल में एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही।

जो बिल्डिंग व्हाइट और ब्लू कलर में दिखाई दे रही है।

यह पिक्चर किसी मार्केट एरिया का है यहां पे एक हॉस्पिटल साठी उपकार हॉस्पिटल नामक बना हुआ दिखाई दे रहा है।